कांच का गेट दिख उसमे परछाई दिखा रही कि सामने एक मतलब परछाई मे कुछ दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर--

छोटे छोटे पत्थर डले हुए दिखाई दे रहे हैं फहाड़ दिखाई दे रहा हैं पीछे और पौधे हरियाली दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर और यहाँ पर मुझे बहोत ही--

मुझे यहाँ पर पाउडर के डब्बे दिखाई दे रहे है क्रीम के डब्बे दिखाई दे रहे है बोहोत सारा सामान दिखाई दे रहा--

पेड़ मैदान दिखाई दे रहा है हरियाली मतलब बाजू में हरा-हरा दिखाई दे रहा गेट भी दिखाई दे रहा है जो कि छोटा लगा हुआ है और यहाँ पर मुझे--